सामने एक टीचर खड़े हैं जो उन्हें गाइड करते हुए--

इस इमेज में देखिएगा यहां पर दीवार पर--

सामने देखिएगा यहां पर एक साइकल दिखा है।

इन कपड़ों की दुकान है जहां बहुत सारे कपड़े नजर आ रहे हैं लाइटें भी जल रही है।

दूर देखिएगा एक बड़ा सा झंडा भारत माता का--